यहाँ महजिद है। यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते है बोहोत सारे लोग है एक बच्चा भी है। अच्छा लग रहा है देखने में रात का समय है। लाइट जला हुआ है बोहोत अच्छा लग रहा है।